फाउंटेन है ये और देखो कितना साफ पानी है क्रिस्टल क्लियर वाटर है।

और एक इन्होंने ग्रीनरी वगैर कितनी प्रॉपर मेंटेन कर रखी है कितना सुंदर व्यू है देखो बच्चों के लिए टॉय ट्रेंस है देखो--

और ये मतलब पूरा पक्का बीम बनेगा एक मडगा--

एडवर्टाइजमेंट भी दे रखी है वाल पे हीरा भाई चश्मे वाले की।

ये देखो दो लोग इस खड़े हैं एक साइड में आंटी खड़ी है ये साफ सफाई कर रही है झाड़ू से--

बनाना कितने सुंदर लग रहे देखो टंगे हुए फ्रूट्स भी।

ये एक सब पोस्ट ऑफिस है सेक्टर चौतीस का चंडीगढ़ में।